दे रहा है जिसकी पहाड़ियो पर पेड़ पौधे लगे हु--

में बहोत सुंदर सुंदर पौधे लगे हुएं नजर--

और दीवारों पर बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक कार खड़ी नजर आ रही हैं।